आ इसमें हम अ पुशअप करते हैं अ अ बॉडी को अपना सुडौल बनाते हैं। बहोत बड़ी-बड़ी इसमें मशीने होती हैं कई प्रकार की मशीने होती हैं जिससे की हम अलग-अलग तरीके से --